कुछ तो बहुत सुंदर फोटोस लगी हुई है।

और पीछे ताला लगा हुआ है एक कूड़ा दान दिखाई दे रहा है।

खड़ा है नीचे लाल कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है।

चावल वगैरह की मिल हो सकती है और दो व्यक्ति काम करने लगे हुए हैं।

और इवनिंग सनसेट के टाइम में अलग अलग चीजें दिखाई--

तथा यह फोटो इवनिंग सनसेट --

यहां पर सभी प्रकार के बेरिं--

और ऊपर भी एक घर बनाया हुआ है ऊपर पैडा दिखाई दे रहा है।

उनके सामने शीशे हैं शोरूम काफी बड़ा दिखाई--

यह किसी वेयरहाउस का दृश्य दिखाई--

पड़ रहा है और ये बड़े बड़े--

बड़ी मशी एक मशीन है जो इनको उठा कर ले जाती है यह शायद हीटर या ए_सी दिखाई पड़ रहे--

नाऊ इट एम_सी कॉलोनी चरखी दादरी यह चरखी दादरी की पिक्चर है एक्सपर्ट हेल्थ --